और डिश लगा हुआ है और नेटवर्क का एंटीना है ।

और ऊपर काला काला आसमान दिख रहा है लाइट दूर तक--

बिलकुल शांत है कोई नहीं है बिस्किट और ऐसे साबुन का कुछ पैकेट सा दिख रहा।

आगे पीछे सब तरफ पेड़ ही पेड़ है हरा भरा है और--

ज्यादा कुछ लोग दिख नहीं रहे हैं डेकोरेशन हुआ है हरे-हरे पौधों से